अऊ दो डॉक्टर डॉक्टर भी हे।

बैंक का नाम एस. बी. आई. है।

कुछ ट्रेन ट्रेन नहीं रुकते हैं।

लंबी दूरी यात्रा करने के लिए--